एक कुर्सी दिखाई दे रही है साथ मे एक वाकर है। दिखाई दे रहा है और एक साइकिल वाला भी दिखाई दे रहा है।

चार दीवारी भी बहुत अच्छी लग रही है। देखने में काफी अच्छा लग रहा है। बहुत ही सुन्दर लग रहा --

काफी हरा भरा वातावरण दिखाई दे रहा है जमीन भी जो है गुलाबी कल कलर की दिखाई दे रही है बहुत ही अच्छा लग रहा है ।

एक होटल दिखाई दे रहा है काफी सुन्दर है काफी अच्छा दिखाई दे रहा है रेड कलर की --

कुछ आग बुझाने के यंन्त्र लगे हुए हैं | खिड़की है खिड़की पर स्टील की जाली दिख रही है सीढियाँ दिखाई दे रही हैं बहुत ही अच्छा लग रहा है।

ये एक गाँव के छेत्र का दृश्य है इसमें फसल गेहुॅं की है लगी हुई है जो पक चुकी है।

पढ़ रहा है साथ में कुछ और भी चेयर दिखाई दे रही हैं।

ये एक पुस्तकालय है यहाँ पर बच्चे आते है पढ़ने के लिए जानकारी लेने के लिए और कोई भी --

ये एक कपड़ो का शॉप है बहुत बड़ी अ इस पर जो है हर तरह के कपड़े बच्चो के बड़ो के लेडीज जेन्स हर प्रकार के बच्चो के कपड़े मिलते हैं।

ये एक मॉल है।

हाँ ऊपर जो है नीले रंग के शीशे लगे हुए हैं और हम्म आस पास जो है हरा भरा पेड़ छोटे मोटे पेड़ लगे हुए हैं देखने में काफी अच्छा लग रहा है बहुत ही सुन्दर लग रहा है।